यहाँ पे हमें एक शॉप दिखाई दे रही है जहाँ पे हमें बहुत सारे सूट दिख रहे हैं साड़ी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है और फॉर्मल ड्रेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है | देन कुछ लोग हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बल्ब दिखाई दे रहा है हमे यहाँ---

पर्दे हमे यहाँ पे दिखाई दे रहे है पूजा की सामाग्री हमे यहा दिखाई दे रही है दीवार पे कुछ डिज़ाइन बने है वो हमे यहाँ पे डिज़ाइन --

बड़े-बड़े पेड़ हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं कुछ पौधे हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं नारियल का पेड़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है सन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और रोड कच्चा रोड दिखाई--

अ ये फोटो एक रोड की है जहाँ पर हमें अ साइकल वाली रिक्शा में यहाँ पे शो हो रही है एण्ड पीछे हमें कुछ अ लकड़ी का कुछ बना हुआ नज़र आ रहा है कुछ लोग हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।

अ यहाँ पे हमे एक नदी दिखाई दे रही है फोटो थोड़ी ब्लैक एंड वाइट हमे यहाँ शो हो रही है और फोटो थोड़ी अ यहाँ पे हमे रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है ब्रिज दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे हमे एक रेलवे ट्रैक शो हो रही है जहाँ हमे एक ट्रैन नज़र आ रही है माल गाड़ी और कुछ लाइट के खम हमे दिखाई दे रहे है।